वहाँ पर काउंटर पर कुछ पोस्टर लगाए गए है नीचे की तरफ बोहोत सारा कचरा दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ कुछ पन्नियाँ लगाई गई है पीछे कि तरफ कुछ सब्जीया दिखाई दे रही --

सीढ़ी दिखाई दे रही है अंदर की तरफ छोटी लड़की दिखाई दे रही है अंदर की तरफ एक लाइट जलती हुई नजर आ रही है और मंदिर के पीछे बहुत सारी--

जिसमे डांगर दिखाई दे रही है पीछे की तरफ तरबूज दिखाई दे रहा है वह पर एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है उसके पीछे एक क्यान रखी हुई है वहा पर एक बक्सा रखा हुआ है।

यहा पर बहुत सारी सब्जी दिखाई दे रही है जिसमे आलू कांदा लसन मिर्च और नारियाल दिखाई दे रही हैं वाह पर एक कटोरा रखा गया हैं।

उसके पीछे एक मशीन दिखाई दे रही है वहाँ पर दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ एक खिड़की दिखाई दे रही है और दीवार पर कुछ लिखा गया है।

वहां पर बहुत सारे खंबे दिखाई दे रहे है उसके ऊपर से तारे लटकती हुई नज़र आ रहे है पीछे की तरफ बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है वाहा पर कुछ तारे लटकती हुई नज़र आ--

तारे लटकती हुई नज़र आ रही है पीछे कुछ मकान दिखाई दे रहे है वाहा पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है वहा पर पीछे--

यहाँ पर बहुत सारी मोटरसाइकिल पार्क किये गये दिखाई दे रही है वहाँ पर दो आदमी खड़े दिखाई दे रहे है पीछे की तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वहा पर दो ऐ सी दिखाई दे रहे है।

यहा पर एक रूम की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर एक लड़का अपनी हाथ मे गिटार लेकर कुछ गाना बजते हुए नज़र आ रहा है उसके सामने एक ऐंगल रखी हुई है उसके सामने बहुत सारी कुर्सियाँ और एक टेबल रखी हुई है।

यहाँ पर एक खंबा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक लाइट दिखाई दे रही है पीछे की तरफ बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर कुछ एसी लगाए गए है साइड में एक सड़क दिखाई दे रही है वाहा से सूरज--

वहा पर बहुत सारे कलर-कलर की कुर्सियाँ लगाई गई है अंदर की तरफ एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान के अंदर हरे कलर कि घास निकलती हुई नजर आ रही है।